गार्डन के बीचो बीच एक स्टैचू खड़ा किया गया है।

पेड़ लगे हुए हैं छोटे पौधे और बड़े पौधे ल--

वहीं से एक रेड कलर की बस जा रही--

अलग अलग वेफर्स के पेकेट टंगे हुए हैं चॉकलेट बिस्किट डिस्प्ले मे दिख रहे हैं।

जंगल में पहाड़ के ऊपर से एक झरना बेहता हुआ नीचे नदी में मिल रहा--

एक सुपरमार्केट दिखाई दे रहा--

ग्राउंड पे बच्चे और आदमी लोग खेल रहे है कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं।

एक बतख का स्टेचू बना हुआ है और कलरफुल रिंग्स बनी हुई हैं।

यहां पे दिखाई दे रहा है एक बास्केट में बहुत सारे टमाटर रखे हुए हैं।

जो कि पूरे ब्लू कलर से बना हुआ है गेट भी ब्लू कलर का--

ये एक भगवानों की दुकान है।

जो कि रेड कलर में पेंट है।

पेट्रोल पंप का इनॉग्रेशन किया गया है उसे ऑरेंज और व्हाइट बलून से सजाया गया --

नाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

वहीं दो बाइक्स लगी हुईं हैं एक ब्लैक कलर एक ब्लू कलर दोनों पे हेलमेट टंगे हुए हैं।

वही कुछ इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए है।

उसके सामने बहोत सारी मछलियां रखी है।

ये एक जिम दिखाई दे रहा है जिम में ट्रेडमिलस लगी हुई है।

वहीं एक लड़का ब्लैक टी शर्ट पहने हुए खड़ा--

साइड में श्री गणेश करके लिखा हुआ है।

जिम में इंस्ट्रूमेंट और मशीनरीस लगी हुई है।

जू के गेट पे लिखा हुआ है वन्य प्राणी सुरक्षण सप्ताह।

ऊपर छोटी छोटी स्कूल बैग्स भी डिस्प्ले में लगाई गई--